पुराना अ-अ-अ-अमल का कुछ घर ब्रिटिश ज़माने का बना हुआ है और शायद अभी उतना तक टिका नहीं है बट उसका मदर सन हमें मिल रहा है और कुछ लोग दो बंदे आया है देखने के लिए।

हम देख रहे है शायद हम गाड़ी में कोई फोर व्हीलर गाड़ी में हम सफर कर रहे हैं और एक ब्रिज के ऊपर से हम गुजर रहे है बहुत बढ़िया लग रहा है दूर में हमें सूरज शायद दोड़ रहे है।

यह मार्केट हमे एक मार्केट एरिया दिखाई दे रहा है तो बहुत बड़े मार्केट है यहां पर बहुत सारा बाइक खड़ा हुआ है इस मार्केट में और दुकानें भी बहुत है काफी है यहां --

ये शायद कोई अ-अ लोग यहाँ पर आता होगा वाटरफॉल्स की दर्शन करने के लिए। बहुत ही बढ़िया नेचुरल एनवायरनमेंट तो है यहाँपे।

यहाॅं पर पत्थर ही पत्थर है। एक पहाड़ बनाया गया है बोहोत सारे। आ रहा है बोहोत ही बढ़िया लग रहा है ये चीज़ तो और बोहोत अच्छा लग रहा है।

यह फोटो मे देख रहे मार्किट एरिया जैसा है यहाँ पर बी बहुत सारे यहाँ पर बी मकान दिखायी दे रहा है बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंगस है यहाँ पर और बी बहुत सारा बाइक यहाँ पर कड़ा हुआ है और उदर बी ऑटो दिखायी दे रहा है कुछ लोग बी आरहा है।

हमें अब रोड नजर में आ रहा है और रोड में हम देख रहे हैं बहोत सारे इधर कुछ दुकानें वुकानें है छोटा मोटा चाय का एक स्टॉल यहाँ पर बाइक भी खड़ा हुआ है।